ऊपर और नीचे की तरफ जाते हुए--

अ काम करते दिखाई दे रहे हैं यह लोग छत पर कुछ काम कर रहे हैं।

झोपड़पट्टी टाइप घर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

अह गेट लगे हुए है यहां पर--

फैक्ट्री इलाका दिख रहा है एक--

चार आइटम यहां पर लगाए गए रखे गए हैं बीच में चटनी और सैलड यहां पर है।

यहां पर एक बड़ा सा घर है।

अं येल मट मशीनें मेडिकल फील्ड से रिलेटेड जो मशीने होती है वह--

और यहां पर दो झंडा इस गेट पर दोनों साइड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

रखे हुए दीवालों पर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर एक एयरपोर्ट है और इस एयरपोर्ट के रनवेश पर हमें--

इस इमेज में हमें एक फ्लाइट दिख रही है।

यह फ्लाइट अपने रन वे पर खड़ी हुई है।

यहां पर हमें एक गिफ्ट शॉप दिख रही है। इस शॉप में हमें--

और इस लकड़ी के दरवाजे पर कांच लगे हैं और इस कांचपर--

ये बर्डस येलो कलर के और इनकी गर्दन ऑरेंज कलर की नज़र आ रही हैं।

टीन शेड से उसको कवर किया हुआ है।

जिसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक नजर आ रहा है।

सब्जियां दिखाई दे रही हैं।

यह एक आइसक्रीम पार्लर की शॉप है यहां आइसक्रीम मिलती है।

यहां पर ऊपर की तरफ एक बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पर--

यहां पर कुछ लोग भी खड़े हुए दिखाई दे रहे--

एक रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है।